और कुछ पंख लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इसमें एक हरे रंग का डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में कुछ मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक घर के बरामदे को दिखाया गया है।

इसमें एक सफेद पेंट और लाल टी- शर्ट पहने हुए आदमी उनको कुछ बता रहा है।

और यह सभी की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक फर्नीचर की दुकान दिखाई गई है इस पर एक लाल रंग का बैनर लगा हुआ है।

इस फोटो में एक जूतों की दुकान को दिखाया गया है।

कुछ उपकरण पड़े हुऐ दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर कुछ खिड़कियों वाले भवन भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसके कुछ कमरे हैं और बाहर एक बरामदा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में कुछ बेनर लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इसमें से एक बैनर पर लिखा हुआ हैं एम_पी बिरला सीमेंट सीमेंट से घर तक--

इस फोटो में प्लास्टिक का पुतला दिखाई दे रहा है।

और सभी पर प्लास्टिक के कवर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दुकान पर कुछ खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में प्रकृति के बहुत से दृश्य दिखाए गए हैं जिसमें एक झरना दिखाई दे रहा है।

इसमें एक फाटक लगी हुई दिखाई दे रही है।

पास ही में कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक टेबल लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यही कुछ लोग इधर उधर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।